जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस ऑफिस में बहुत सारे लाइटें लगी हुई है जो वाइट कलर की है.

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस दुकान में एक व्यक्ति है जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस दुकान में काफी अंधेरा भी है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस पार्क में झूले भी लगे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस पार्क में एक बड़ा सा पेड़ भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस पार्क की मिट्टी ब्राउन कलर की है।

जैसे कि मैं समझ पा रही हूं ये इवनिंग का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे अभी एक भी लोग नहीं है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस फील्ड के आसपास बहुत सारे पेड़ भी लगी हुई हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं इसके आसपास घर भी हैं और बिल्डिंग्स भी हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां बहुत सारे लाइटें लगे हुए हैं जो वाइट कलर की है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां बहुत सारे फैन भी लगी हुई है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इसके आसपास काफी सारे पेड़ भी हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस फील्ड में काफी सारी मिट्टियां भी हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस फील्ड में काफी सारे घांस भी हैं।

तीन चार गाड़ियां खड़ी हुई है जिसमें से तीन गाड़ियां एक रेड वाइट और ब्लू कलर की है जैसे कि मैं समझ पा रही हूं--